यह एक शोरूम दिखाई दे रहा है शोरूम के बाहर मुझे बहुत सारी बाईक खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिनका कलर रेड ब्लू और ब्लैक दिखाई दे रहा है यह शोरूम के अन्दर मुझे ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखाई दे रहे है।

और यह ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है शोरूम के ऊपर ऑटोमेटेड वर्क शॉप लिखा हुआ है यह एक हीरो का शोरूम है और यह देखने में बोहत ही अच्छा लग रहा--

यहां तसवीर में मुझे बहुत सारी मूर्ती खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिनके ऊपर हनडा रखा हुआ है और ये व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है।